य यहां हम देख सकते हैं कि यह एक जिम का दृश्य है।

यहां पर जिम करने की काले रंग की मशीनें पड़ी हुई है और--

काफ़ी सारा पानी भरा हुआ है यहां पर एक आदमी--

छोटे से बच्चे का हाथ पकड़ कर पानी में खड़ा हुआ दिख रहा है।

बेडशीट और कंबल हम देख सकते हैं।

यहां हम देख सकते है कि यह एक बेडरूम है।

यहां हम देख सकते हैं कि--

और रात का समय देख सकते हैं यहां पर नीला और हरे रंग का डस्टबिन पड़ा हुआ है।

यहां पर पानी के बीच में काले रंग की लाइने देख सकते हैं।

के हुआ समान दिख रहा है यहाँ पर--

यहां हम देख सकते हैं कि यहां पर--

और यहां पर काफी सारे मोटरसाइकिल एक्टिवाए खड़ी हुई है।

जिसके बाहर एक गाड़ी दो एक्टिवा दो मोटरसाइकिल --

एक आदमी साइड में फोन पर बात करते हुए नजर आ रहा है।

बड़े और छोटे दोनों आकार के गुलदस्ते यहां पड़े हुए हैं।

ओर यहां पर हम देख सकते हैं कि कुछ बेल टँगी हुई है।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक सड़क है। यहां पर एक ऑटो और मोटरसाइकिल खड़े हुए हैं।

यहां हम देख सकते हैं कि यह एक मिठाई की दुकान है।

एक बड़ीसी खिड़की हम देख सकते हैं।

घीया गोभी देख सकते है।